जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे छोटे-छोटे से पौधे हैं और यहां आप देख सकते हैं काफी अच्छी हरियाली है यहां पे --

ट्वेलर ज्वेलरी शॉप है देख सकते हैं आप यहां पे काफी बढ़िया है ये घर में खोली गई है देख लीजिए काफी अच्छी इसकी फैसिलिटी है लाइटों से इसकी रेलिंग सजाई गई है।

यहां हम देख पा रहे हैं हमें यहां पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल आप देख सकते हैं काफी बड़ा सारा है।

जैसा कि हम यहां पे देखने को मिल रहा है यहां पे गार्डन है गार्डन में आप देख सकते है यहां पे झूले लगे हुए हैं।

झूले आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के हैं और यहां पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ कचरा सा हमें दिखाई दे रहा है।

और यहां पे राजस्थान गवर्नमेंट्स की तरफ से भी फ्री है और भी काफी सारी यहां पे सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं।

जैसा की हमे यहां पे देखने को मिल रहा है यहां पे एक काउंटर लगा हुआ है काउंटर आप देख सकते है काफी प्यारा है गेस्ट हाउस इस पर लिखा हुआ है और यहां पे --

यहां आप देख पा रहे है यहां पे नर्सरी है नर्सरी में आप देख सकते है अलग-अलग तरह के यहां पौधे है।

और एक बहुत ही बड़ा गार्डन है गार्डन में आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं तो छोटे छोटे पौधे भी हैं काफी अच्छी इसमें हरियाली है।

जैसा कि हमें यहां पे देखने को मिल रहा है यहां पे एक मस्जिद है मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं काफी सारे लड़के बैठे हैं।

सब ने अपने सर ढके हुए है सब ने टोपी लगाई हुई है और सब बढ़िया कार्पेट पे आराम से बैठे --

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे है यहां छोटी छोटी सी दुकाने लगाई गई है दुकानों के बाहर एक बाइक खड़ी है और एक कार है।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं बहोत ही प्यारी जगह बनाई गई है और आप देख सकते हैं यहां पे --

और यहां पे देख सकते कैफे है कैफे के बाहर यहां पर आंटी और भइया खड़े है टेबल चेयर लगाई गई है।